है यहां पर एक बहुत बड़ी सी मौल है।

यहां पर एक बहोत बड़ी चीज है।

सब्जी बनी हुई है।

यहां पर प्लांट्स रखें--

इस फोटो में हमें नजर--

यहां पर बहोत बड़ी शॉप है।